एक शॉप दिखाई दे रही है यहाँ पर जिसमें बहुत सारे गॉगल्स रखे हुए हैं।

ये हीरो होंडा का एक शोरूम दिखाई दे रहा है काफी बड़ा शोरूम है और यहां पर का काफी सारी बाइक खड़ी हुई है जो अलग अलग रंग की है।

और यहां पर ये कांच का बना हुआ स्टूडियो दिखाई दे रहा है काफी सारी लाइट्स भी लगी हुई है और ड्रेसेस भी है लेडिस के और लेडिस के शूज वगैरा है यहां पर--

जिनका एड्रेस और मोबाइल नंबर भी यहां पर शो हो रहा है।

उसके नीचे पानी बहता हुआ नजर आ रहा है।

जहां एक सड़क भी दिखाई दे रही हैं गांव में जाने का रास्ता--

यहां पर एक बड़ी सी शॉप दिखाई दे रही है।

यहां पर एक वाइट कलर का बड़ा सा सु बोर्ड नजर आ रहा है।

यहां पर काफी सारी वरमालाएं दिखाई दे रही है।

इस इमेज में एक भोजनालय दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में एक नीले कलर का पाइप नजर आ रहे हैं।

और शॉप में एक महिला व एक पुरुष भी दिखाई दे रहा है।